जहां आसमान का कलर स्काई ब्लू ब्लू व्हाइट दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है| नीचे घास लगी हुई है।

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका निर्माण हो रहा है| जिसमें बहुत सारी बलिया लगी हुई है| पीलर दिखाई दे रहे हैं| पर्दे लगे हुए हैं| एक सामने कुर्सी रखी हुई है| रेत डाली हुई है।

पानी का कलर उम काला काला दिखाई दे रहा है| बतक भी काले दिखाई दे रहे है।

सामने बहुत सी मछलियां दिखाई दे रही है| टाइल दिखाई दे रही है| सामने टाइल दिखाई दे रही है| बाल्टी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू कलर का है।

एम और राइट साइड पर लोहे की बाल्टी दिखाई दे रही है| कुछ बॉक्स नजर आ रहा है टेबल नजर आ रहा है| मछली के पास तार नजर आ रही है।

सामने एक किराने का दुकान है जिसमें काउंटर दिख रहा है| काउंटर के ऊपर एक बोटल रखा हुआ है उम कुछ डब्बे रखे हुए हैं अंडे रखे हुए है| सामने कांच लगा हुआ है।

सामने एक गौशाला बनी हुई है जिसमें गाय चारा खा रही है| उसमें पानी भी है।

सामने एक बहुत बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है| एक सामने टावर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है| आसमान का कलर रेड और ब्लैक में दिखाई दे रहा है| बहुत से लोग ग्राउन्ड में खेल रहे हैं।

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जो जिसने कैप लगाई हुई है| नीचे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है।

सामने एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है| पानी दिखाई दे रहा है| गाय दिखाई दे रही है| ए चबूतरा दिखाई दे रहा है| पेड़ दिख दे रहे है| पत्थर दिखाई दे रहे है| घास दिखाई दे रही है| पानी का कलर काई हो रहा है।

ने एक ढोसा की प्लेट रखी हुई है जिसमें ग्रीन कलर की चटनी रखी हुई है| केले का पत्ता दिखाई दे रहा है| ग्लास दिखाई दे रही है।

कचरा डब्बा बना हुआ है। घास लगी हुई है। घास अ ग्रीन कलर की है। रास्ता दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है।

मिरर दिखाई दे रहा है। लड़के के पीछे और एक और लड़का दिखाई दे रहा है। मीरर में एक लड़का दिखाई दे रहा है। सामने कुछ सामग्रियां रखी हुई--

सामने मंदिर दिखाई दे रहे है अ अगरबती दिखाई दे रही है मोमबत्ती दिखाई दे रही है दियें दिखाई दे रहे है घास दिखाई दे रही है धुआं नज़र आ रहा है।